हाथ में किताब छे लोग के से बड़ा बेजोर छै।

बहुत बड़ा बाजर छै एक में देरी छै एक नम्बर दृश्य छै रात के सीजन छै।

सब लोग छै चले रहल छै एक आदमी छै दो आदमी मस्त छै ठंडी लगे छै ज्यादा--

मस्त जगह छै